कोनो आदमी है लाइटे भी दिख रही है मकाने भी दिख रहा है प्लाय भी दिख रहा है टाइल्स भी दिख रहा है।

रोड पर रखी हैं बहुत सारे बैठे हैं अच्छी लग रही है।

दिखने में बोहोत अच्छी लग रही है बादल बीच में बादल भी दिख रहा है पेड़ भी लगा हुआ है काँचे भी दिख रहा है खिड़की भी दिख रही हैं।

चेयर भी रखी हुई है पंखा भी लगा हुआ है घड़ी भी टंगी हुई है बहुत सारी बोटल भी रखी हुई है पाउडर भी रखा हुआ है।

सफेद कलर भी पुता हुआ है खिड़की भी लग रही है और खुली हुई है बहुत बड़ा मकान भी बना हुआ है देखने मे बहुत अच्छा लग रहा हैं ।